इस छवि में दो लड़की यहां पर साड़ी और लहंगा कुछ पहन के डांस किया जा रहे हैं।

और रूम के अंदर वॉल में बहुत सारे बैलून चिपकाया हुआ है यहां।

और दो स्टेजिस बिल्डिंग दिखाई दिया जा रहा है।

रेस्टोरेंट का वॉल अह येलो कलर का अह दिखाई दे रहा है।

और वॉल में बहुत सारे फोटो फ्रेम चिपकाया हुआ है और बलूंस वगैरा भी चिपकाया हुआ है।

बहुत सारे मोमबत्ती जलाकर रखा हुआ है।

अ ये छवि में बहोत सारे जिम में यूज होने वाली सामग्री दिखाई जा रहा है।

अह अंदर बहुत सारे नहाने का अह सामग्री भी है।

एक दुकान दिख रहा है।

ये छवि एक रेस्टोरेंट की है।

रूम के अंदर दो मिरर भी दिखाई दिया जा रहा है।

बहोत सारे लोगों को खड़ा हुआ दिखाई दे रहे--